पत्थर पड़े हुए हैं मौसम भी बड़ा सुहाना दिलकश लग रहा है।

ये पियोनियर अकेडमी की इमारत है और इस इमारत की दीवार के ऊपर--

ये एक पौधा है और इसके छोटे छोटे से प्लांट पड़े हुए है ये देखे ख़ूबसूरती को कितना --

पोधै भी राखे हुए हैं और ये आँखों को कितना दिलकश दिखाइ देता है।

लेकिन अभी कोई भी यहां पे नहीं है पंखे भी बंद पड़े हुए हैं सिर्फ एक बंदा है जो के --

उसके अलावा यहां पे कोई भी नहीं है कुर्सियां और टेबलें खाली पड़ी हुई हैं।

और की गाड़ियां कंपनियों की गाड़ियां नजर आ रही हैं।

ये दिल्ली का एक मशहूर महल है यहां पे लोग फिर रहे हैं और--

ब्रांड की दुकानें दाएं बाएं नजर आ रही हैं और दरमियान में स्टैचू बना हुआ है घोड़े का --

जहां पे लोग अंदर खरीददारी करते हुए नजर आ रहे हैं और --

आदमी के दोनों पाओ जल गए है एक पाओ पे पट्टी बंधी हुई है प्लैस्टर नजर आ रहा है दूसरे पाओ पे भी --